एक पेड़ है जिसमें रेड और पर्पल कलर के फ्लावर लगे हैं या किसी पार्क का व्यू है हरे-भरे मैदान में या पेड़ निकला है जिसमें नई-नई कलियां भी निकली हुई है।

में म्यूजियम मे सजाए हुए है जो लोग देखने आते है इनको--

पति- श्याम जी की महाराज छत्रपति साहू जी महाराज की बहुत बड़ी सी मूर्ति या स्टैचू बना हआ है | यह किसी चोराहे के बीच में बना हुआ है।

ऊँची सी बिल्डिंग बनी हुई है और एक ऊँचा सा चबूतरा बना--